जो कि सफेद कलर की है जिसे फूलों से सजाया हुआ है।

जिनमें आलू को भरा जा रहा है।

यहां एक बहुत सुंदर गेट है।

और साइड में एक हरा भरा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और कमरे की छत में लाइट लगी हुई है।

यह एक बहुत सुंदर रास्ता है।

और रास्ते के सामने दो महिला और एक बच्ची खड़ी दिखाई दे रही है।

झरने का पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है।